जैसे की गेंदे के फूल हैं रोज़ के फ्लावर हैं वगैरा और इनका डिफ्रन्ट डिफ्रन्ट कलर है जैसे कि गेंदे के फूल का कलर ऑरेंज होता है और रोज़ का कलर रेड होता है।

और यहाँ पर लाइटें जल रही हैं यह शाम का टाइम है और लोग बैठे हुए हैं।

जैसे की पेस्ट पैकेट के समान कुरकुरे ब्रश और एक फ्रिज में बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है।

इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक ग्राउंड पार्क की तस्वीर है अगल-बगल ढेर सारे घने-घने पेड़ हैं बीच में ये पूरा --